जिस को की फूल से सजाया गया हुआ न दिखाई दे रहा है।

एक बहोत ही बड़ा शोरुम दिखाय दे रहा है जोकि साइकिलों का नजर आ रहा है और यहाँ पे बहोत सारे खंभे दिखायी दे रहे हैं जोकि पीले कलर के नजर आ रहे हैं।

हमें यहाँ पर एक ओरेंज और सफ़ेद कलर के खंबे दिखाई दे रहे हैं जो छोटे-छोटे नजर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनमे से कुछ लोगो ने यहाँ पर पीले कलर की जैकेट पहनी दिखाई दे रही है।

पर हमें एक केक दिखाई दे रहा है जोकि पिंक और सफ़ेद कलर का ही दिखाई दे रहा है और पिला कलर का नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सारी लाइटे लगी हुई नजर आ रही है जोकि बहुत अच्छी --

जिसमे से लाल कलर की साड़ी पीले कलर की साड़ी और नीले कलर की साड़ी दिखाई दे रही है जोकि इस बहुत अच्छी लग रही है।

एक बहोत बड़े जंगल दिखाय दे रहा है। जंगल में हमें बहोत सारे पेड़ दिखायी दे रहे हैं। बहोत सारे पौधे नाजर आ रहे हैं। काली जमीन दिखाय दे रही है और हमें यहाँ पर बहोत सारे लोग जंगल की तरफ रास्ते जाते दिखाय दे रहे हैं जोकि रास्ता जंगल की तरफ जाता हुआ नजर रहा है और --

उपर एक बहोत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। कमरे में हमें बहोत सारे पंखे दिखाई दे रहे हैं और हमें अपना टेबल फैन भी नया नज़र आ रहा है और हमें यहाँ पर एक बहोत सारे टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और टेबल के ऊपर हमें बहोत सारी बाल्टी नज़र आ रही है।